जी हम गार्डन जैसी चीज को देख पा रहे दूर की तरफ और सामने की तरफ हमे बृ एक एक ग्रीन कार्पेट देखने को मिल रही है ।

थोड़ा सा जमीन सा उठा हुवा कुछ थोड़ा तिरछा सा हमे कुछ मैदान जैसा देखने को मिल रहा है जिसमे कुछ पाइप्स आ रहा है प्लास्टिक का और उन्मे उगे हुवे है गमलों मे कुछ पौधे ।

अगर हम बात करे तो यहा पर हमे चारों तरफ बोहोत ही बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे है जो की जमा के भी रखे और कुछ पत्थर ऐस वैसे भी है ।

साइड मे बनी हुई कुछ बिल्डिंगे हमे नजर आ रही हल्की बोहोत | और हमे कुछ पेड़ और कुछ पौधे नजर आ रहे है जो की हरेभरे है| और बिल्डिंग मे के आग या होने के वजह से छुपे हुवे हैं|

हम हमे नजर आ रहे है बोहोत से लोहे के रैक्स देखने को मिल रहे है जो की तीनों तरफ फैले हुवे है।

जिसमे लगा हुवा है ब्लैक कलर का गेट | एक गेट खुल चुका है और दूसरा गेट वहा पर लगा हुवा है | पीछे की तरफ हमे बोहोत से घने घने पेड़ देखने को मिल रहे है| ऊपर की तरफ हल्का सा आसमान भी है ।

इसकी अगर हम बात करे तो हमे एक अ फुटपाथ नजर आ रहा है जोकि बना हुआ है टाइलों से| वहा पे भी आगे जाके एक आदमी भी खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी फुटपाथ के उपर बैठा हुआ है ।

और हमे एक रास्ता नजर आ रहा है जिसपे चल रही है कुछ कारे रुकी हुई है इस टाइम | और हमे अ एक शैड नजर आ रहा है जोकि लोहे के बेस से टीका हुआ है।

पिक्चर की अगर हम बात करे तो हमें बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है जहां पर बनी हुई है काफी प्यारी सी एक बिल्डिंग जिसमें बने हुए है कम से कम दस फ्लोर और वो सारे के सारे फ्लोर्स हमें काफी क्लीयर नजर आ रहे है ऊपर की तरफ हमें खुला आसमान देखने को मिल रहा है।

ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ लडका खाली आगे की और जा रहा है| सामने में एक रैंप और सिढियाँ देखने को मिल रही हैं।